एक दरवाजा हमे दिखाई दे रहा है।

हमें यहां पर काले अंगूर के बड़े बड़े गुच्छे नजर आ रहे हैं।

साथी यहां पर कुछ बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं हम यहां--

एक बड़ी सी टंकी कि ऊपर हमें।

साथी एक लाइट और है।

इन रैक पर हमें कुछ मलायें नजर आ रही है।

सामने हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं।

इस मंदिर को बहोत से फूलों से सजाया गया है।

बाहर दो लोग हमें नजर आ रहे हैं।

साथ ही यहां कुछ बड़े पेड़ भी हमें दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बड़े चौखट नजर आ रहे हैं।

जिसने सफेद रंग की टी शर्ट पहन रखी है।

पीछे बड़ा सा बोर्ड बना है जिस पर कुछ तस्वीरें लगी हुई--

सामने एक ब्रिज बना हुआ नजर आ रहा है।

कुछ लोग हमे यहां पर नजर आ रहे हैं।

दीवार पर कुछ पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने हम एक चर्च को देख रहे है।

यहां बड़े बड़े चट्टान दिखाई दे रहे हैं साथ ही कुछ बड़े पेड़ भी यहां हैं।

सामने एक बड़ा सा मैदान है जिसपे बहोत से पेड़ भी लगे हुए हैं।